उसके पास में ही एक पीले कलर की लकड़ी में कुछ बनके वहां पर रखा हुआ है।

ये छोटी घंटी दिखाई दे रहीं है जाली के पास ही एक गेट के पास है।

पेटीएम का एक फोनपे का उसके पास में एक हाथ हिलाने वाला टॉय भी रखा हुआ है।

पानी में दो प्लग बने हुए है जिसमें से सरिया दिख रहा है।

इसमें बहोत सारी हरे कलर की पत्ते दिखाई दे रहे हैं उसके दूसरी तरफ भी एक पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।